इलेक्ट्रॉनिक ऑटो के बहुत सारे फायदे है इसमें जो है बैटरी के माध्यम से चलता हैं।

यह इमेज में हम देख पा रहे हैं यह रेलवे स्टेशन है और रेल यहां बहुत सारे रेल जो है आवागमन कर रहे हैं।

बना रहे हैं और व्यक्ति यहां दिखा रहे हैं और उसमें दो चम्मच रखे हुए हैं और यहां बहुत सारे लड़की लड़कियां है उसे कैंटीन में।

इस इमेज में हम देख पा रहै है यहाँ तीन वयक्ति है और तीनो जो है शानदार तरिके से एक बॉडी बिल्डिंग बिल्डर के साथ है हाथ मिलाये हुए है।

इस इमेज में हम देख पा रहै है एक जो है बस है अ सरिवा बस है अ बस के माध्यम से हम इधर - उधर जा सक --

ओवर ब्रिज दिखाई दे रहा है और उस ओवर ब्रिज में बहुत सारे लाइट है और लाइट जो है बहुत फोकस कर रहा है बहुत ही बड़ा खम्भा है।

यह इमेज हम देख पा रहै है यह जो है ओवर ब्रिज बना हुआ है ओवर ब्रिज के नीचे एक तलाहा अब गन बहुत बड़ा नदी है नदी है और नदी में बहुत --